एक टॉवर बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है जिसमें बहुत सारे तार निकले हुए है।

यह पेटीएम रख पेटीएम करने वाला है।

इस पे पहाड़ बहुत सारे छोटे-छोटे टुकड़ों में पत्थर पड़े हुए हैं।

एक आदमी जिसके चश्मा और एक चश्मे को जेब में रखा हुआ है।

लोहे के एंगल भी लगे हुए हैं और झंडे भी बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं और पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं।

एक आदमी कुछ सामान दे रहा है जिसने टी शर्ट लोवर पहन रखा है।